यहां कुछ कचरा भी पड़े हुए हैं और चारों और पेड़ है चारों तरफ तीन लगी हुई है और लोहे के खंभे लगे हुए हैं।

सामने एक बहोत बड़ी नदी है जो दो भागों में बटी हुई है।

दरवाजे के पास बहुत सारी अलमारियां रखी है जो पुरानी है उनके पास एक पलंग डाला है।

और चारो ओर पेड़ लगे हैं उस मंदिर के चारो ओर व्यक्ति खड़े हैं ।

मंदिर के सामने बहुत सारे सामान रखे है और तम्बू लगा हुए है आसपास पेड़ है।